इस तस्वीर में हम देख सकते है की एक आदमी और एक औरत फोटो खिचवा रहे है उनके बगल में एक पुतला है ऊपर गुलाबी रंग के कपड़ो का डेकोरेशन किया गया है।

अन्दर फूलो का विभिन प्रकार रंगों के फूलो का भी इस्तमाल किया गया है और नीचे लाइटे भी फोकस लाइटे भी लगाई गई है।

येलो कलर की एक अ येलो कलर की पर्दे लगाए हुए है।

तस्वीर में हम देख सकते हैं कि एक आदमी का पैर ऊपर की ओर है उसके पैर में बोहोत सारे बैंडेज लगे हुए हैं।

में हम देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं एक आदमी है यहाँ पे एक बड़ा सा झूला है उसके पीछे एक बड़ा सा पेड़ है।

चढ़ने के लिए सर्स भी दिखाई दे रहे हैं और लड़के लड़के सभी ने कप अ कपड़े पहने अच्छे।

पीछे प्रभु की अह बड़े-बड़े पिक्चर्स पोस्टर्स लगाए हुए है एक महिला यहां पे स्पीच दे रही है और बाकी के लोग सुन रहे हैं।

वीर में हम एक मंदिर देख सकते है मंदिर बड़ा ही प्राचीन है यहां पर दो लोग है जो मंदिर की तरफ जा रहे है।